काफी सरे पौद और काफी साड़ी घासे उगी हुई दिक्षिते हे मला यहाँ से एक टावर भी दिक्षाते हे मला यहाँ से आस्मां भी काफी नीला दिक्षाते हे.

यहां पीर दो बच्चे आपस में खेलते हुए दीक्षते हैं यहां प्रति टीम बने हुए दीक्षते हैं।

मला या पर सुज़ुकी चा एक लोगो भी बना हुआ दिक्सता आहे मला यहा पर हरी ओम सुज़ुकी लिखा हुआ हुआ दिक --

माला यहा काफी सारे घासे भी उगी दिखाई दिक्सती है माला यहा का आसमान भी काफी नीला दिखाई दिक्सता है।

माला यहां नदी के पास काफी सारी घास दिखाई दीक्षित हैं माला यहां नदी से थोड़ी दूर काफी सारे पेड़ और काफी सारे पौधे दिखाई दीक्षित हैं माला यहां टावर भी दिखाई दीक्षिता--

टाइले लगी हुई दीक्षती है मला यहां आसमान भी काफी नीला दीक्षता है।